और बहुत सारे फूल के पेड़ है जिसे--

इस फोटो को देखकर हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे आदमी औरत बच्चे--

और नीचे वाइट रेड और ब्लैक कलर का मैट बिछाया गया है जैसे वो सब योगा कर रहे हैं।

और कोई कोई जंगली पौधे भी देखने को मिल रहे हैं।

और इसके गेट में शीशा वाला गेट लगा है।

इस फोटो को देखने से पता चल रहा है ये किसी आदमी का स्टूडियो है जिसमें एक बहुत बड़ा कैमरा स्टैंड है।

दो चेयर हैऔर एक वायलन बजाने वाला है।

और पीछे दीवार पर एकदम स्टीकर चिपकाया गया है एक फैन है दो लाइट है और एक शीशा भी है।

उसके इस साइड भी जंगल और इस साइड भी जंगल है और अलग-अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं।

की दुर्गा पूजा का पंडाल बना है बहुत अच्छा पंडाल बना है और बहुत सारे श्रद्धालु गण यहां पे देखने आए हैं।

और ये पंडाल बहुत अच्छे कलर में पेंट किया गया है।

और यहां पे ब्लू और ग्रीन कलर का--

और पीछे पोस्टर हैयोगा को बढ़ावा देने का।

और पीछे पीला मकान है और बहुत सारे पेड़-पौधे भी है पीछे.

और वाइट और ब्लैक ग्रिल है और एक पेर पौधा भी है बाहर।

कि एक डिजिटल डिवाइस का दुकान है।

ब्लू कलर का थीम हैउसका और वाइट और ब्लू .

जिसके दीवार पर बहुत अच्छी पेंटिंग है और एकदम लग्जरी टेबल कुर्सी है।

और बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं और नीचे अच्छा फ्लोर भी है।

यहां पे गाड़ी धूलने आता है जिसको एक पाइप के सहारे ऊपर उठाया गया है।

और वाइट कलर की गाड़ी है ब्लैक कलर का चक्का है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं एक जिम है।

और बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं।

गाना गा रही है एक डी_जे लगा है।

और पीछे से एक लाइट निकल रहा है ।

और एक मंदिर है और इस साइड रेलिंग बना हुआ है।

और बहुत सारे मोटरसाइकिल है और पेयर भी बहुत है।

और इसके सेलिंग फैन भी है दो-तीन।

और इसको ग्रीन और वाइट कलर का पेंट किया गया है देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

इस चित्र में हम देख सकते हैंयह एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

और कोटा की प्रसिद्ध कचौरी भी मिलती है।

और बहुत बड़े से लेकर छोटे पेड़ पौधे भी हैं।

आदमी औरत और बच्चे योगा कर रहे हैं।

इस फोटो में हम साफ देख सकते हैं।

इस फोटो में देख के पता चल रहा है ये लाइब्रेरी का फोटो है।

बहुत सारी कुर्सी हैऔर पढ़ने के लिए बहुत सारे हन्ने हैं।

और दो-तीन फैन हैऔर पिलर है।

ये फोटो की से शादी का पंडाल लग रहा है।

में स्टेज है लाल कलर का पर्दा लगा है और बहुत सारे फूलों से सजाया गया है।

और इसमें चार चेयर हैं और बहुत छोटे-छोटे जंगली पौधे हैं।

और एक बगल में एक ग्रीन कलर का घर है और पीछे बहुत सारे पेर है और छत पे दो आदमी हैं।

चटाई है और एक पंडाल टाइप बना हुआ है और एक बहुत बड़ा झूला पीछे दिख रहा है।

और एक छोटा सा घर भी देख सकते हैं और तारे भी देख सकते हैं।

यह फोटो एक कैफे का है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां हैं।

और एक गितार वाइट पनि का पैक है तीन स्टूल है।

और एक पीला कलर का गेट भी बना है और बहुत भीड़ लग रही है।

इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं लोग होली खेले हैं।

इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं यह एक स्टेडियम का चित्र है।

और एक गेट है अच्छा वाला और नीचे हरी-हरी घासे हैं।

और नीचे ड्रावर में किताबें रखी है।

और दो गाड़ी दिख रहे हैं और दो बड़े-बड़े लाइट दिख रहे हैं।

वो हाईलाइट है एक कलर क कलर पिंक है और एक कलर का रेड है।

क्लास है जिसमें एक बोर्ड रखा है।

इस क्षेत्र में हम देख सकते हैंएक वाइट कलर का बिल्डिंग है।

इस चित्र में पता चल रहा है एक ट्रैक्टर है।

और एक हम छोटा सा ऊंट देख सकते हैं।

इस क्षेत्र में हमको देखने के लिए मिल रहा है।

एक पुराना बिल्डिंग है जिसका कलर --

जिसमें एक शादी बैठने वाला एक बड़ा सा कुर्सी है।

और बैलून भी दो साइड से दिख रहे हैं अच्छा लग रहा है फूल भी पीछे लगे हुए हैं।

इस फोटो में हमें देखने को मिल रहा है।

एक बच्चा कंप्यूटर पे देख रहा है।

इस फोटो में हमें देखने को मिल रहा है।

और पीछे एक गोल्डन ब्राउन कृष्ण जी का मूर्ति है।

और ब्लू कलर और गोल्डन कलर का पीछे बैकग्राउंड है।

एक बस है जिसको सजाया गया है फूल से।

और शीशा पे लगाया गया है कुछ देर और एक आदमी सामने खड़ा है लाल कलर का कपड़ा पहने ब्लू कलर का पति पहन पेंट पहने।